और एक गेट भी है।

और बहोत सारे इंसान भी है।

और दो लाइट बल्ब भी दिखाई दे रहा है।

उसका पीछे में एक पानी भी दिखाई दे रहा है।

एक बड़ा सा बकेट भी है।

यहां पे एक सफेद कलर का बिल्डिंग है।

और घर का आगे में बहुत सारा गाड़ी दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारा सामान है।

रूम में दो चेयर हैं।

और रोड का साइड में बहुत सारा लाइट भी है।

और दो फिगर दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारा चेयर है।

और बहुत सारा ग्लास भी है।

और ग्रीन कलर का कारपेट है।

घर का अंदर में बहुत सारा इंसान है।

और रोड में बहुत सारा गाड़ी है।

और उसका सामने एक पेड़ भी है।

बहुत सारा दब्बा भी है।

और उसका आगे में एक चेयर भी दिखाई दे रहा है।

एक पानी बोतल भी दिखाई दे रहा है।

और एक हैंडवाश भी दिखाई दे रहा है।

और उसका बीच में अ दो इंसान है।